इतना अच्छा है कहने लायक भी नहीं बहोत अच्छा है। इस पिक्चर में होटल दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में चाय की यहां पर भेजी जाती है तथा एक लड़का यहां पर खड़ा है जो चाय लेने रुक गया है।

शायद मॉल जैसे हैं ये।